यह एक चित्र है | यहां एक्ससाइज व्यायाम हो रहा है | यहां कुछ चटाई भी बिछी हुई हैं ।

यह एक चित्र है बोहत ही सुंदर चित्र है| यहां चाय चाट टाइप की बन रहा है | यहां--